यहाँ सामने कुछ लोग ड्रामा कर रहें हैं और बड़ी सी पोस्टर लगी हुई है और कुछ लोग देख रहें हैं ड्रामा देख रहें हैं यहाँ काफ़ी सारे रंग के पोस्टर हैं ।

भोत सारी लाईट नजर आ रहीं हैं सामने एक बड़ा सा स्टेज भी है ।

काफी सारी लाइट्स हैं और एक मूवी चल रही है और काफी सारे वॉलपेपर्स लगे हुए हैं।

काफी सारी लाइटिस लगी हुई हैं बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहें और घास भी नजर आ रहीं हैं ।